यह देखिए लैब जांच। यह लैब है। यहां पर जांचें की जाती हैं। खून की इत्यादि जांचें की जाती हैं। टी.बी. की जांच जैसे कई बीमारियों की भी जांचे की जाती हैं। यह --

यह देखिये योगा क्लास में बच्चे और बूढ़े और जवान सब लोग योगा की प्रेक्टिस कर रहें हैं। यह वृद्द आवस्था में खड़े हुए हैं।